छोटे छोटे पत्थर है जो कुछ पीले रंग के हैं।

पेपर लिखा हुआ है भवन निर्माण एवं वास्तु कला विशेषज्ञ।

नीचे जूते रखे हुए हैं।

जिसके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सामने बहुत सारे फ्रिज रखें हुए हैं।

बड़ा सामने एक घर है।

सामने कांच का दरवाजा है और यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई है।

सामने दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे फरस किया हुआ है।

चेहरे पे मुस्कान लक्स कोज़ी नीचे सामने एक काउंटर है।

जिसमें बोहोत सारी चॉकलेटें बिस्कुट रखे हुए हैं।

ये एक दवाइयो की दुकान है।

ऊपर लाल हरी पीली रंग की लाइटें लगी हुई हैं।

जिस पर काला कलर किया हुआ है।